अलमारी के ऊपर एक फूल भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर एक घर के अंदर दिखाई देता है।

इसके अंदर बहोत सारा इंसान काम कर रहा है।

ये बहुत सारा मिठाई बेच रहा है।

दुकान के अंदर दो बच्चों भी रहा है।

इस तस्वीर पर एक मेला दिखाई देता है।

गेट सामने एक दुकान भी दिखाई दे रहा है।

टावर के नीचे रस्सी खींचकर कपड़ा सुखाया गया है।

इस तस्वीर पर एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

घर के बाहर दो इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाई दे रहा है।

और पीछे में बहोत सारा घर दिखाई दे रहा है।

इसमें एक बिस्तर भी दिखा दे रहा है।

टेबल के ऊपर दो ग्लास रखा है।

इस तस्वीर पर एक रूम दिखाई देता है।